पेटीशोर मतलब यहां पर जो पेट होता है बिल्ली डॉगी ये सब का खाना यहां पर--

मिलता है यहां पर एक गाय डॉग का पिक्चर बना हुआ है अह पीछे वॉल पे।

अ और इमेज दिख रहा है और यहाँ पर सामने में आइसक्रीम का ये लगा हुआ है जो --

अ और जो स अ सनसेट होने वाला है।

सनसेट या सनराइज होने वाला है।

अ उसका इस्टोर दिख रहा है। यहां पर कुछ--

यहाँ पर एक ये कपरे का ये दिख रहा है मेरा मतलब कपड़े रखे हुए हैं हैंग किए हुए टी शर्ट और अ ट्राउजर मतलब ट्राउजर पैंट टाइप का --

यहां पर एक अ लेख है और यहां पर एक बोट अ लिखा हुआ है वेलकम यू एट अ रंजीत सागर लेक --

अ ये रखा हुआ है मतलब नोटिस ये सब चिपकाया हुआ है और सामने में एक टीचर के लिए बैठने के लिए एक चेयर और--

यह एक अह खेत है बहुत बड़ा सा खेत।

अह गार्डन टाइप का सामने में बना हुआ है।

और नीचे में कोई पंजाबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है।

पीछे भी कुछ लगाया है जो येलो येलो दिख रहा है।

नीचे में ये नीचे का जो हिस्सा है वो रेस्टोरेंट लगता है ऊपर का हिस्सा में कुछ और हो सकता है।

ये एक पुराना सा मंदिर देख रहा है प्राचीन मंदिर होगा।

गेट दिख रहा है रेड कलर का एक गेट दिख रहा हैं मंदिर के अंदर जाते हुए।